यह सामने लड़का खड़ा हुआ है। एक इसकी बॉडी अच्छी है। इसके पीछे काफी मशीनें लगी हुई हैं। ऊपर पंखा लगा हुआ है। पीछे लाइट लगी हुई हैं।

चारो तरफ यहाँ आवास बना हुआ है और यहाँ का दृश्य काफी अच्छा लग रहा है।

यहाँ कुछ लोग दो लोग मच्छी बेच रहें है और यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए हैं एक क्रेट में ये मछलियाँ रखी हुइं हैं।

बाल्टी रखी हैयहाँ क्रेट रखी हुए हैं। काफी व्यक्ति है माछिया ले रहे हैं कुछ व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं सामने ये आवास बने हुए हैं। काफी अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर फैक्ट्री का एक शो करने वाले है| यहाँ बराबर में ताजमहल का पोस्टर लग हुआ है।